इस तस्वीर में मुझे एक लाल कलर की बड़ी सी बस भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक सफेद कलर की घर नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे घर के ऊपर बहोत सारे बर्फ भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे पीछे में शर्मा स्वीट्स लिखा हुआ भी नजर आ रहा है।

तस्वीर में मुझे एक लाइट बल्ब जलते हुए भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे टेबल का ऊपर सब लाल कलर की कपड़ा ढका हुआ भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे टीना का छत भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे गेट पर दो लंबी लंबे हैंडल भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक बादल भी दिखाई दे रहा है।

पीछे में मुझे बहुत सारे बड़े बड़े घास भी नजर आ--

इस तस्वीर में मुझे चर्च नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे सफेद कलर की बड़ी सी दीवार भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे सफेद कलर की वॉल भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक फैंसिंग का रासी भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे पीछे में बहोत सारे गोल गास भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे तख्ता से बनाया हुआ गेट भी नजर आ रहा--

इस तस्वीर में मुझे एक गाड़ी रास्ते पर पार्किंग करते हुए भी नजर आ रहा है।